यह दृश्य संभवत किसी संस्थान या सरकारी परिसर का है।

इस तस्वीर में एक मोबाइल डी_जे साउंड सिस्टम दिखाई दे रहा है।

सभी लोग दर्पण के सामने एक्सरसाइज कर रहे हैं।

दीवारों पर बहुत सारे पोस्टर और फिटनेस से जुड़ी आकृतियां बनी हैं।

जिसमें कई एक्सरसाइज मशीने है और वेट्स रखे हुए हैं।

पीछे में कुछ ईमारतें और हरियाली भी दिख रही है।

जिसमें कांच पर मां मरियम की छवि बनी हुई है।

यह इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप का दृश्य है।

जहां एक बड़ा सजावटी हाथी की मूर्ति दिख रही है।

जिसके सामने कुछ छोटे-छोटे निर्माण नजर आ रहे हैं।

यह परिधान राजस्थान या गुजरात के लोक शैली की को दर्शाते हैं।

वो मारुति सुजुकी का डिजायर मॉडल है।

यह तस्वीर एक शानदार वेडिंग स्टेज की है।

महिलाएं और बच्चे रंग बिरंगे कपड़ों में सज धज कर पूजा में शामिल हो रहे हैं।

कुछ लोग सामान खरीदते हुए दिख रहे हैं।

यह तस्वीर एक नर्सरी या बागवानी स्थल की है यहां पौधे लाइन से थैलों में लगे हुए हैं।

जिस पर वाहन के टायरों के निशान साफ दिख रहे हैं।

यह एक व्यस्त बाजार क्षेत्र में स्थित व्यावसायिक इमारत है।

जिसमें कई दुकानों और ब्रांड्स के बोर्ड लगे हैं।

यहां एक आइसक्रीम की दुकान जगमगाती रोशनी में दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर बार्बिक नेशन रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार की है।

अंदर वेटर और ग्राहकों की हलचल दिख रही है।

जिसमें थर्टी परसेंट तक की छूट की जानकारी दी गई है।

कैफे के बाहर रंग बिरंगे लैंप और पौधे सजाए गए हैं।

यह एक गांव का दृश्य नजर आ रहा है।

कुछ दूरी पे बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं।